यह एक पेट्रोल पम्प का दृश्य है।

यह एक होटल का दृश्य दिखाई दे रही है।

यह एक मंदिर का दृश्य है।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

एक व्यक्ति है दिखाई दे रही है।

बाहार मे ईटा रखी हुई है घर के सामने से रोड गुज--

व्यक्ति लाइन में खड़े नजर आ रहे है।

यह एक ऑफिस का दृश्य है।